यह एक वाहन है। वाहन पर खाना बना है। खाना खाने के लिए लोग रुके हुए हैं। इस वाहन मे कोयला --

यह एक संस्थान है। संस्थान का नाम है कृषी विज्ञान केंद्र। यहाँ पर कृषी का दिया जाता है। कृषि से सम्बंधित --

यह शादी ब्याह के फंक्शन मे कुछ महिलायें सेल्फ़ी लेने के लिए एक संगठन कमिटी बनाए ।

पार्क को आप देख सकते हैं बहोत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एक कोने में देखे तो --